बहुत सारे यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे है दूर दूर में है पूरा घाना घाना नहीं है।

यहाँ पे शादी समारोह का तैयारी किया गया है शादी के लिए यहाँ को सजाया गया है बहुत बढ़िया ढ़ंग से यहाँ बलून वगैरा का डेकोरेशन किया गया है लाइटिंग व्यवस्था किया गया है।

यह एक शो रूम है।

पेट्रोल भराने के लिए आए हुए है बहुत सारे लोग इधर-उधर --

यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है और दूर -दूर पूरा हरा -भरा खेत ख खेत दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बाइक सामने खड़े हुए है और दो ठो गेट बनाया गया है।